और यहां एक घर है। यहां पे बहुत सारा बांस लगे हुए है और यहां पे शायद घर बनेगा और उसके नीचे जो बांस है। उसके नीचे पानी है और यहां पे बिल्डिंग है और यही घर बनेगा --

यह एक रूम विवाह भवन की तरह लग रहा है और यहां पे बहुत सारा कुर्सी रखी हुई है।

यह आदमी पानी पी रहा है या पेट्रोल पी रहा है इसे पता ने चल रहा है। शायद पेड़ के नीचे खड़े है और शायद दो उगली खड़ी करके उसको आसमान को दिखा रहे है। शायद उसको कहना है कुछ लेकिन क्या कहेंगे उसको पता नहीं।

यह एक पहाड़ है। उधर भी एक पहाड़ के बगल में दूसरा पहाड़ है और काफी बड़ा है और इस इतने बड़े पहाड़ पे दो ही लोग है।